वही बाजू मे बहोत सारी दुकाने लगी हुई है और वही पर बहोत सारी मछलियाँ पड़ी हुई है ओ मछली बहोत सारे रंगों की भी है वही बहोत सारे लोग भी खड़े हुए है।

वही इमारत के बाहर बो सीढ़ियां भी है जहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है और उन्होंने विभिन्न रंगों के वस्त्र पेहन रखे है वही इमारत के आजू-बाजू बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए है।

जिनका रंग पीला लाल नीला पीला लाल नीला और सफेद है वही पर दो आदमी बेठे हुए है कुर्सी पर और उनकी कुर्सियों का रंग काला और पीला दिखाई दे रहा है।

वही इमारत मे एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है जो कांच का है और वही बहुत सारे लोग भी खड़े हुए है जिन्होंने विभिन्न रंगों के वस्त्र पहन रखे है।